हम यहां जो चित्र देख रहे हैं यहां पर हमको गौशाला का चित्र नजर आ रहा है।

यहां पर मुर्गियां पाली जाती हैं और मुर्गियों के अंडे इसको पोल्ट्री फार्म से बेचा जाता हैया अलग-अलग दुकानों पर एक्सपोर्ट किया जाता है।

आपको मिल सकते हैं यहां पर एक कमरे में ए_सी वगैरह--

अपने परिवार के साथ अपने मित्रजन के साथ मित्रगनों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ संबंधियों के साथ--

उसी के साथ बांस का डंडा बांधकर ये लोग कोई रस्म निभा रहे हैं।

और ये पानी से निकालने की वजह से मर गई होंगी क्योंकि पानी में--

और काफी बड़ा हॉल है यहां पर कम से कम सौ सौ डेढ़ सौ आदमी आराम से बैठ जाएंगे।